इस फोटो में आप एक मंदिर देखिए मंदिर के पीछे आपको एक चट्टान दिखाई दे रही है।

तिरसुल मे मंदिर आप देख सकते हो की चारों तरफ से इसमे आपको इसमे व्हाइट कलर का इसमे टाइल्स लगा हुआ हे ।

अब इसमे जो है आपको जो है एक पहाड़ी दिख जाएगी नीचे आप देखिए इसमे कुछ एक आदमी आपको खड़ा हुआ दिखाई दे गा एक ऊपर आपको जो है छत के ऊपर एक आदमी दिखेगा।

जो की एक जो है अंदर से कुछ जाली से कुछ अंदर जो है डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वाइट जो है दीवाल के साथ साथ फर्नीचर--